बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और आप सभी लोग ज्वेलरी वगैरा देख रखे अह देख रहे हैं कुछ महिलाएं भी बैठी हुई है और कुछ पुरुष लोग भी--

अ और इस अह इमेज में हम देख सकते हैं कुछ लोग यहां इस पोस्ट बैंक के बाहर--

इस पिक्चर को देख रहे जो हम देख रहे हैं यह एक सुजुकी अ--

जैसा कि हम इमेज को देख सकते हैं ये एक कैफे नजर आ रही है।

जिसमें कुर्सियां वगैरह टेबल वगैरह लगाए गए हैं और साइड में एक टेबल है जिस में जिस पे सोफा भी लगा हुआ है।

ये शादी वगैरह क्या कार्यक्रम चल रहा है।

इससे फुटेज को देख रहे हैं यह अह शाम के टाइम की फुटेज दिखाई दे रही है।